खेल कर खड़े हुए हैं कुछ लोगों ने सिर पर रूमाल बांध रखा है कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं यहां पर आस-पास में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं सभी लोग बहोत --

और फूलों का ध्यान रख रहे हैं कुछ महिलाएं खेत में खड़ी है कुछ --

यह फोटो एक सड़क की है जहां पर एक बैरिकेटर लगा हुआ है आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे है।

ये पिक्चर एक मैकेनिक की दुकान की है जहां पर गाड़ियां ठीक होती हैं यहां पर एक आदमी येलो कलर की टी शर्ट में बैठा है।

और एक आदमी ब्लू कलर की टी शर्ट में घूम रहा है बाहर दो तीन गाड़ियां खड़ी हुईं है।

बाते कर रहे हैं इस मस्जिद के ऊपर एक बालकनी भी है जहां से लोग खड़े होकर नीचे देख रहे हैं यहां पे एक ग्रीन कलर का त्रिपाल लग --

यह पिक्चर एक से बनी हुई जगह की है यहां पर कारीगर काम कर रहा है फर्श ही कर रहा है।

साइड में बजरी गिरी हुई है ऊपर लगे लगे हुए हैं और साइड में दो सफेद कलर के कारे खड़े हुई है।

स्विमिंग पूल में बहोत सारी लाइटें लगी हुई है साइड में चार चेंजिंग रूम बने हुए हैं और --

यह पिक्चर भुट्टो की है यहां पर बहुत सारे इकट्ठे करके भुट्टे रखे हुए हैं पास में सूखी हुई घास है।

यह पिक्चर एक बस डिपो की है यहां पर तीन बसें खड़ी हुई है बस के पास में एक कंडक्टर खड़ा हुआ है।

सामने से एक आदमी आ रहा है कंडक्टर के पास में एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पा पास में से एक आदमी जा रहा है।

अंदर जाने के लिए अलग से गेट बना हुआ है आस पास में पिंक कलर का टेंट लगा हुआ है पास में

ये घर तीन मंजिला है यह ब्लू कलर का है इस पर एक गेट लगा हुआ है पोर्च में दो गाड़ियां खड़ी हुई है।

यह फोटो एक किराना स्टोर कि हैं यहाँ पर घर के खाने का सभी सामान मिलता हैं जैसे तेल का पीपा --

यह फोटो एक घड़ी की शॉप की हैं यहां पर बहोत सारी घड़ियां लगी हुईं हैं यहां पर एक आदमी खड़ा हैं।

यह फोटो एक गार्डन की है इसमें तीन चार बेंच लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए।

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक दो आदमी यहां पर घूम रहे हैं नीचे घास बिछी हुई है और पास में मिट्टी गिरी हुई है।

ये पिक्चर एक सड़क की है जहां पर गाड़ियां जा रही है तीन मोटरसाइकिल जा रही है।

ये फोटो एक मूवी हॉल की है इसके अंदर सीटिंग का एक अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है।

सामने ब्लू कलर की शर्ट में एक आदमी घूम रहा है यहां पर सभी सीट्स पर ब्लू कलर के --

पिक्चर यह किराना स्टोर की है यहां पर अलग-अलग तरह की बहुत सी घरेलू उपाय की सामग्री मिलती है यहां पर --

काम की सामग्री लेने आते है यहां पर कोका कोला चिप्स और मिर्च मसाले आदि सभी चीज अवेलेबल रहती है यहां से हम अपने घर का सभी सामान ले सकते हैं।

लड़का खड़ा है और बहुत सी सब्जियां बेच रहा है इस सब्जी वाले के--

और यहां पर दो टेबल लगी हुई है दो सोफे लगे हुए हैं बैठने के लिए--

इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल है यहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी है जिस पर स्टूडेंट पढ़ाई वगैरा करते हैं यहां पर एक डेंटल कॉलेज है।